और एक सफ़ेद कलर की गाड़ी है। आजु-बाजू दो तीन लोग जा रहे है।

कुआँ है बाजु-वाजु झाड़ है और एक गुलाबी कलर के फूलो का झाड़ है एक बाजू में झाड़ है जो हरे रंग की है और एक--

एक ब्लू रंग की गाड़ी है एक वाइट रंग की गाड़ी है एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है जिस पे लाल और ऑरेंज कलर का कॉलर किया हुआ है नीचे बड़े-बड़े बांबू रखे हुए हैं।

गुलाब जामुन का पैकेट रखा हुआ है। बाजु में एक बड़ा सा दिवार है जिसमे हरा कलर का पेंट किया हुआ है ।

बाम रखा हुआ है पीछे। आजू-बाजू कुरकुरे रखे हुए है। बड़ा सा सेल्फ और पीछे रासन का सामान रखा हुआ है।

ये तस्वीर एक स्पोर्ट्स क्लब का है जहाँ श्री लक्ष्मी स्पोर्ट्स का एक आदमी है जो बाहर खड़ा होके देख रहा है।

रोड पर बहुत सारी बाइके खड़ी है एक आदमी है जो बाइक चला रहा है नीचे दो गाड़ी खड़ी है ग्रे और वाइट कलर की एक आदमी है जो बाइक पर से कोरियर डिलीवरी कर रहा हैं।

बाइक है नीचे आजु-बाजू बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं।

एक आदमी है जो चाय पी रहा है।

एक आदमी है जो बैठा हुआ है। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। पीछे एक लड़की है जो ब्लू और वाइट कलर का--